रहा है। लाइब्रेरी में कई रैक बनी हुई हैं।

और कुछ खजूर के पेड़ हैं और कुछ लाइट की पोल बने हुए हैं।

के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। भवन का नाम लिखा है और भवन के ऊपर शेड डले हुए हैं।

यह एक चौराहे का अ फोटो है यहाँ पर शायद रोटरी बनी हुई है।

अ समारोह का फोटो लग रहा है। यहाँ प साज सज्जा की हुई है। सजावट की हुई है लाइटों से।

ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है पानी में तालाब के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है पक्का।

अ यहाँ हमें एक भवन दिखाई दे रहा है।

कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। नीले रंग से और सफेद रंग से उन प कुछ लिखा हुआ है।

ये सूखी जमीन है और रेतीली जमीन हमे दिखाई दे रही है और यहां पे --

थोड़ी दूर पर एक घर बना हुआ दिख र --

और बैंक के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं एक व्यक्ति नीचे खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

और एक सफेद कलर की टैबल भी रखी दिखाई दे रही है। ए --

दुकानो के शटर दिखाई दे रहे है जो बंद है और दुकानो के नीचे सीढ़ियां बनी हुई है|

पर एक पुराना पेड़ लगा हुआ है पेड़ कुछ तीरछी आकृति --

और एक व्यक्ति है जो ऊपर बैठा हुआ है।

यहाँ पर हमे एक समुद्र बना दिखाई दे रहा है और समुद्र में आसमान की साया दिखाई दे रही है।

हरा प्याज है और शिमला मिर्ची हमे यहाँ पर दिखाई दे रही है।

और बाहर फर्श है और मंदिर की साइड में भी कुछ छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं।

यहाँ पर हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है।